खिड़कियाँ बनी हैं यहाँ का फर्श काले रंग का है।

इधर एक टोकरा रखा है जिसके अंदर गाय का चारा है।

यह एक मैदान है यहां नीचे मिट्टी पड़ी है।

यह एक ढाबा है जो सफेद और लाल रंग का है।

यहां पर बहोत सुंदर सुंदर कपड़े रखें है यहां पर एक सामने लड़की खड़ी है जो संतरे रंग का सूट और पीले रंग का पैंट पहनी है।

सफेद रंग का है उसे पे एक खंभा लगा है जो काले रंग का है।